पीछे एक मंदिर भी मौजूद है जो कि बहुत ही प्राचीन नज़र आता है जिस पे बहुत से देवी-देवता बने हुए है ।

यह दृश्य एक बहुत ही बड़े खेत का है जहाँ पर सूखी घास हरी-भरी घास तथा कुछ --

सब्जी की दुकानों के ठीक ऊपर नीली तथा पीली रंग की पल्लिया भी लगाई गई है ।

इस फोटो में हमे बहुत ही बड़ा सा घास का मैदान देख रहे है देखने से यह प्रतीत होता है कि यह कोई पार्क का दृश्य है।

दृश्य में हम यह साफ़ देख पा रहे है कि यह एक कार्यक्रम समारोह का दृश्य है जहां पर हमे एक बहुत ही बड़ा सा --

रंगीन कपड़े पहन कर आए हुए है तथा यहाँ पर एक बड़ा-सा इमारत भी हमे नज़र आ रहा है जो की बहुत ही सजा धजा हुआ है।

इस फोटो में हम ये देख रहे हैं की यहाँ एक घुमावदार रोड है उन घुमावदार रोड के किनारे कुछ ऊँची ऊँची बाउंड्रीइज भी हैं ।

बहुत सारे लोग आए हुए है जो की अपने-अपने झोलो में कुछ वस्तुएं खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर और भी विभिन्न-विभिन्न प्रकार की --

जिन्होंने सफ़ेद रंग के कपड़े और एक सफ़ेद रंग का मास्क पहन रखा है | यहाँ पर ज़मीन में एक भगवान राम --

इस फोटो में हम ये देख रहे है की यहाँ पर एक मकान का निर्माण कार्य चल रहा है जहां पर उसकी सेट्रिंग की प्रक्रिया चल रही है ।

जिसके बीचो बीच एक चौकौर सा पानी का जलाशय भी हमे दिख रहा है | पानी का जलाशय आसमान के --